htmlएचटीएमएल कोड में phpपीएचपीकोड को कैसे लागू किया जाय उस पर यह एक छोटा ट्यूटोरियल है यह अनेक स्थानों पर अति उपयोगी है
उदाहरणस्वरुप यदि मुझे phpपीएचपीटैग्सtagsबनाने हैं और अपना नाम यहाँ एकोecho करना है
इसे संचालन करने पर चलिए इस फाइल पर क्लिक करते हैं हमें केवल एक alex मिला
अब उदाहरणस्वरुप मैं इसके अंदर htmlएचटीएमएल लागू कर सकता हूँ और alex को थोड़ा स्पष्ट करने के लिए इसे यहाँ एकोecho करता हूँ
किन्तु मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं दूसरे प्रकार से इसे स्विच कर सकता हूँ
चलिए पुनः शुरू करेंएक htmlएचटीएमएल पेज बनाएँ मैं इस उदाहरण का उपयोग करने जा रहा हूँ
मैं एक पीएचपीphpऔर एक टैगtag यहाँ पर शुरू करूँगा मैं alex को एकोechoकरता हूँ और फिर पीएचपीphp टैग्सtags से बाहर आता हूँ और बोल्डbold यहाँ पर लिखता हूँ और phpपीएचपी एंड टैगtag के बाद यहाँ बोल्ड लिखता हूँ
और यह हमें समान उत्तर देता है कुछ भी नहीं बदला यद्यपि मैंने पेज रिफ्रेशrefresh किया है
अतः हम इसे underline यानि रेखांकित में बदल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि alex रेखांकित हो गया है
अतः हम इसे दोनों तरह से कर सकते हैं यह आप पर निर्भर करता है कि htmlएचटीएमएल कोड को एकोecho के अन्दर प्रयोग करना है या नहीं किन्तु वहाँ इसके और अनेक लाभ हैं
अबयदि आप एचटीएमएल html जानते हैं तो आपको पता होगा कि इनपुट टैगtag एक टेम्प्लेटtemplateटैगtagहै
अतः चलिए text लिखते हैं इसका नाम नेम name ही रहेगा और इसकी वाल्यू alex होगी
चलिए इसे रिफ्रेश करें और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें टेक्स्ट बॉक्स मिला है जिसके भीतर alex है अब मैं गेटgetवेरिएबल हेडर को पाने के लिए पीएचपी का उपयोग करना चाहता हूँ और उसे अपने इनपुट वेल्यूमान के भीतर रखिये
अब यह सचमुच में कुछ परिस्थितियों में लाभदायक हैं जैसे फॉर्म भरे जाने में और एरर देखने में जहाँ आप चाहते हैं कि दर्ज वेरिएबल्स प्रत्येक टेक्स्ट बॉक्स के मान के भीतर ही रहे
यदि आपने getगेट ट्यूटोरियल पहले से नहीं देखा है तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि उसे देखेंगे
अब इसे कुछ लाइंस नीचे लाइए स्पष्टतः हम अभी भी इस कोड को सफलतापूर्वक रन कर रहे हैं क्योंकि यह एक जैसी लाइन के आधार पर कार्य करता है
अतः आप यह जो यहाँ देख रहे हैं बिलकुल उसी के सामान हैआपको केवल इसे थोड़ा नीचे करना होगा और मैं यहाँ पर एक phpपीएचपीटेक्स्ट बनाने जा रहा हूँ
यह एक अजीब भूरे रंग का दिख रहा है क्योंकि हम पीएचपीphpहाइलाइटिंग पर कार्य कर रहे हैं और यह सचमुच में इस प्रकार की हाइलाइटिंग को पहचान नहीं रहा है
अच्छा मैं अभी alex को एकोecho करने जा रहा हूँ
चूँकि यह एक लाइन के आधार पर कार्य करता है इन सबको ऊपर एक लाइन में ले आइये अतः अब मैंने इसको इसमें लागू कर दिया है और लागू करना पूर्ण हुआ है
रिफ्रेश करने पर हमें alex की वेल्यूमानमिलती है हम अब एक htmlएचटीएमएलवेल्यूमानके अंदर पीएचपीphp एकोecho कर रहे हैं
अतः यहाँ हम पीएचपीphpकोड को अपने वेल्यूमानके भीतर उपयोग कर रहे हैं
मैं डॉलर अंडरस्कोरअधोरेखागेटdollar underscore getको दर्शाने जा रहा हूँयाद रखिये सिंगल उद्धरणचिह्नोंsingle quotesका प्रयोग करके
मैं name लिखने जा रहा हूँ और फिर रिफ्रेशrefresh
कुछ नहीं हुआ अतः name=alex टाइप करेंजो हमें इसके भीतर alex देता है
name=kyle टाइप करें यह हमें इसके भीतर kyle देता है
मूलतः आप जो चाहें वो phpपीएचपी कोड इसमें लागू कर सकते हैं
echoएकोphp info लिख कर देखिये और आपको एक बहुत ही अजीब उत्तर मिलता है
यह php info document पीएचपी इन्फो डाक्यूमेन्ट का htmlएचटीएमएलकोड है
अतःआप देख सकते हैं कि इसके भीतर ढेर सारे कोड हैं
यहाँ हम केवल phpपीएचपीइस्तेमाल कर रहे हैं केवल एक चीज़ है जिसकी आपको फ़िक्र करने की आवश्यकता है उसके बारे में आपको सतर्क किया जा रहा है वह हैं आपके सिंगल और डबल उद्धारणचिह्न
अतः यह phpपीएचपी कोड को htmlएचटीएमएलकोड में लागू करने के लिए बुनियादी ट्यूटोरियल था
मैं आशा करता हूँ कि यह लाभदायक था
मैं रवि कुमार आईआईटी बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद